रोड पर ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और दो डाले खड़े हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक घर दिख रहा है उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ पेड़ डिजाइन से कटे हुए हैं जमीन पर पेड़ो के पत्ते पड़े हुए हैं।

बहुत सारी खिड़कियां भी दिख रही है।

बड़ी बड़ी बोरियां रखी हुई हैं।

फोटो में सामने एक बिल्डिंग दिख रही है।

फोटो में एक पार्क दिख रही है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

के रॉड तीन दिख रहे हैं।

दीवार पर एक सफेद कलर का स्विच बोर्ड भी दिख रहा है।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

उस पर एक ब्लैक कलर का हेलमेट रखा हुआ है।

इसपर एक रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है महारिषी यूनिवर्सिटी --

सामने गार्डन बना हुआ है जिसमें छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

इस फोटो में सामने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं।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

उसके बाहर एक दिवाल बनी हुई है।

इस फोटो में एक शोरूम दिख रहा है जिसका एंट्री गेट शीशे का है।

सीढ़ी के बीच में रेलिंग बनी हुई है।

इस फोटो में बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक दुकान भी दिख रही है।

इस फोटो में सामने छह लोग खड़े हुए हैं जोकि रंग लगाए हुए हैं।

बहोत सारी कुर्सियां और टेबल पड़ी हुई हैं।

जमीन पर रेड कलर की कालीन बिछी हुई है।

बहुत सारी खिड़कियां भी दिख रही हैं।

पीछे लोहे की जाली लगी हुई है।

इस पर फ्लावर पॉट भी रखे हुए हैं।